इस चित्र मे हमे बैठने की व्यवस्था नजर आ रही है यहाँ पे लाल रंग की कुर्सिए नजर आ रही है काफी सुंदर फ्लोरिंग दिखाई दे रही है।

बहोत ही सुंदर शंडि लेयर लगा हुआ है यहा काफी सुंदर लाइटिंग्स है मार्बल फ्लोरिंग भी काफी खूबसूरत नजर आ रही है।

इस चित्र मे हमे किसी मॉल के अंदर खाने पीने की व्यवस्था दिखाई दे रही है दीवारों पे पॉप्कॉर्न और ड्रिंक्स लिखा हुआ है यहाँ एक बड़ा सा मैन्यू भी लगाया हुआ है।

यहा पर दो बडे बडे स्टूल रखे हुए है यहा काफी साफ सुथरा व्यवस्था दिखाई दे रही है।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

चित्र मे हमे एक उद्यान नजर आ रहा है जहा कुछ बुजुर्ग लोग बैठ के आपस मे बात कर रहे है कुछ डस्ट्बिन रखे हुए है यहा कुछ व्यक्ति टेहल रहे है इसमे बड़े-बड़े पोधे दिखाई दे रहे है।

यहा कुछ म्यागी के प्याकेट है और कुछ मसलो के पैकेट नजर आ रहे है।